ये एक ग्रामीन का डाक सेवा केंद्र है यहाँ पर ग्रामीण के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम सेवा उपलब्ध है।

यह सहरसा का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सभी प्रकार के --

ग्रामीन प्राथमिक बिदियालय है यहाँ पर सभी प्रकार के --